यह दृश्य एक बिल्डिंग का है जिससे देखने से यह प्रतीत होता है की यह एक हीरो मोटर्स का शोरूम है जहाँ बहोत सारी गाड़ियां खड़ी --

यह नजारा किसी कार्यक्रम का है जहाँ पर बहुत सारे लोग --

वही पास में एक व्यक्ति नीले रंग का मास्क पहन कर रोड क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है वही रोड के दूसरी तरफ बहुत सारे ठेले लगे हुये है।

यह नजारा किसी बहुत ही घनी आबादी वाली शहर का है जहाँ पर रात का वक़्त है।

और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पर बहुत सारी लाइटें नजर आ रही है और बहुत सारे भीड़ भी नजर आ रही है।

कुछ ने सइकल ले रखी है और कुछ बाइक से जा रहे है।

इस पर समुद्र की लहरे बनी हुई है और उस पर एक बड़ी सी शिप भी नजर आ रही है।

इस दृश्य में हम एक कार देख पा रहे है जिसका इंजन खुला हुआ है जिसे दो मैकेनिक मिल के बना रहे --

वहीं पार्क के उस तरफ़ हमें एक फव्वारा भी नजर आ रहा --

कई सारे लोगो ने शर्ट भी पेहेन रखी हैं यहाँ पर बहुत सारे बूढ़े-बुजुर्ग --

यह दृश्य एक पुस्तकालय का है जहां पर बहुत सारी बुक सेल्फ मौजूद है।

हर एक बुकशेल्फ़ में किताबे भरी पड़ी हुई है और प्रतेक बुकशेल्फ़ के बाहर कुछ स्टीकर लगे हुए हैं।